पानी है टावर के ऊपर कुछ छतरी टाइप कुछ लगे हुए हैं जो कि कनेक्टर के लिए होते हैं।

जहाँ पर जहाँ ऑटो और कार और बाइक्स की गाड़ी बनी हुई चित्र बना हुआ है।

यहाँ पे युवा केन्द्र दिख रहा है जहां पर बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है सफ़ेद कलर से नीले कलर के बोर्ड में ऊपर में पेड़ दिख रहा है।